कुछ खम्बे वगैरा गड़े हुए दिखाई दे रहे है बेंचे रखी हुई है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है ।

यहाँ पे पहाड़े दिखाई दे रही है बहुत सारी चट्टाने भी दिखाई दे रही है यहाँ पे सीढियां बनी हुई दिखाई दे रही है और कुछ पत्थर वगेरा भी पड़े हुए--

कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है कुछ कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है ।

कुछ पोस्टर वगेरा लगे हुए है और बहुत सारी बूके भी रखी हुई दिखाई दे रही है ।

पे एक टेबल भी रखी हुई जिसके ऊपर प्लेटे रखी हुई दिखाई दे रही शटर लगी हुई है।

यहाँ पे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे बाउंड्री भी दिखाई दे रही है और बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहा है और ब्रेंचे भी रखी हुई --

और एक बॉक्स भी रखा हुआ है जो कि बहुत बड़ा है यहाँ पे बहुत सारी बोटले भी रखी हुई दिखाई दे रही है और एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और चेयर भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके दिवाल का कलर व्हाइट और ग्रीन है यहाँ पे एक तस्वीर भी लगी हुई दिखाई दे रही है और खिड़की भी दिखाई दे रही है यहाँ --

यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंगे बनी हुई है जिनका कलर वाइट और रेड है और बॉउंड्री भी दि हुई है और बहुत सारे बाइके भी खड़ी हुई।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके दीवाल के कलर व्हाइट ब्लैक और येलो है | यहाँ पे बहुत सारे मशीने रखी हुई है जो कि एक्सरसाइज कि है और लाइट भी लगी हुई दिखाई --